सामने एक बाइक भी खड़ी है और एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

जिस पर बहोत से बस लगे हुए हैं।

जो चट्टानों से घिरा हुआ है।

यहां पर हम सामने देख पा रहे हैं कि कुछ लोग चेयर पर बैठे हुए हैं।

यहाँ पर हम सामने एक दुकान देख पा रहे हैं यहां पर बहुत से रंग की--

जंगल जैसा नजारा देख पा रहे हैं।

एक सड़क दिखाई दे रही है और बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे देखने को --

है साथ ही एक मैदान दिखाई दे रहा है।

और फूलों का रंग हल्का गुलाबी है।

सामने हम देख पा रहे हैं की बहोत तेज बारिश हो रही है।

एक ऑटो दिखाई दे रही है।

साथ ही नीले रंग का कारपेट भी बिछा है।

जिस पर बहोत से जुड़े लगे हुए हैं।

साथ ही बच्चों के फिसलने के लिए फिसल पट्टी है।

यहां पर हम सामने मारुती सुजुकी के एक--

कुछ पन्नियाँ सादी दिखाई दे रही है तो कुछ पन्नियाँ रंग बिरंगी हैं।

और ऊपर सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहे है।

एक कमरे को देख पा रहे हैं।

सामने हम एक पेट्रोल पम को देख पा रहे है।